जिसके कारण इसकी जो निख जिसकी खूबसूरती है वो कम हो गई है और इसके चारों ओर ये दीवारें हैं।

और यह दीवारें ईंटो से बनाई जाती है और पथरो से पथरो से पत्थरो के ईंटे बहुत मजबूत होते है।

यहां पे छोटा लग रहा है लेकिन इसके साइज़ में बहुत ही बड़ा है क्योंकि मुझे देख करके प्रतीत हो रहा है यह एक मॉल है जहां पर चार पांच वॉलीबॉल रखे गए हैं--

जो एक लाइट है लाइट है सॉरी फुआरा नहीं है जो बहुत ही अच्छा गार्डन को लग रहा है दिखा रहा है।

यह जो लोग है जो एक चाय के दुकान पर आए है जिसका नाम है रोहन चाय सेंटर --

मस्ती में मनोरंजन में यह रोड भी काफी अच्छा है काफी प्यारा- सा रोड है जो ईंटो का बनाया गया हैं।

यहाँ पर तीन महिलाएं और एक पुरुष है जो किसी फंक्शन के दौरान यहाँ पर आए हुए हैं और यह फंक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं।

इस फंक्शन के यह फंक्शन का यह रीज़न है कि यहाँ पर किसी चीज का--

सामान खरीदना बहुत ज्यादा आवश्यक है क्योंकि जो हमारे पास नहीं है उसे खरीदने के लिए हमें--

इसे खाने के लिए बाजार जाना पड़ता है और बाजार में इसे काफी महंगा दामों में बेचा जाता है इसे गरीब लोग अफ़्फोर्ड नहीं कर सकते।

कुछ काफी माइंड को फ्रेश लगता है ठंडक महसूस होती है।